इस गेट बाहर आप देख सकते है यहाँ पे काफी सारे लोग जो हैं यहाँ पे इकठ्ठे हुए हैं यहाँ पे देख सकते है चारो तरफ।

तैयारी देख रही है ये मैरेज हाॅल देखिये।

यहाँ पे जो घास को जो चर रही है आप देख सकते है।

यहां फिर उसके पापा खड़े हुए हैं बच्चे की यहाँ काफी सारे लोग है यहाँ पे चारों तरफ पेड़ ही पेड़ आ रहे है।

यहाँ पर महिलाओ की संख्या और बच्चो की संख्या काफी ज्यादा है ये स्प्रे की नीचे पूजा कर रही है।

यहाँ पे तबला बजाना सीखा रहे है और यहाँ पे पियानु बजाना पील --

हेलो दोस्तों जैसा की आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मोर दिख रहा है ये मोर देखिये कितना प्यारा मोर है इसने अपने सारे पंखे जो हैं फैला के रखे हुए हैं ये मोर देखिये।

इ देखिये यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तस्वीर है जो की पार्क की तस्वीर है ये देखिये जो पार्क है काफी बड़ा-सा पार्क काफी बड़ा पार्क है।

यहाँ पे टेक्ट्रा लोग यहां से निकल रहे है बाढ़ से बचने के लिए बाहर जा रहे है।

ये देख सकते है यहाँ पे यहां पे ए स्टेज है स्टेज पे इस स्टेज पे लड़की परफॉरमेंस कर रही है डांस परफॉरमेंस कर रही है।

न्यू हेयर लुक जेन्स ब्यूटी पार्लर है आप देख सकते है जो बैंक है जो की ऊपर है और इसके नीचे यहां पे --

याव्याश जैसा की आपको दिख रहा है कि सामने जो बिल्डिंग सी बनी हुई है।